और यहां पे आप देख सकते हो।

थोड़ा दिख रहा है यहां पे बॉक्स दिख र--

आप देख सकते हो यह फेवीक्विक के डिब्बे रखे हुए हैं ये--

ये यहां पे लाइन लगी हुई--

एक आदमी खड़ा हुआ है और यहां पे ए_सी लगी हुई --

ये यहां पे आप देख सकते हो ये औरतें हैं ये भंगडा कर रही हैं।

आंगन लिखा हुआ है और यहां पे गाड़ी देख रही है।

कैसे हो यहां पे समान भी दिख रहा है।

काले रंग की ये यहां पे--

ये पेड़ भी दिख रहे हैं ये यहां पे --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

दिख रहे हैं और ये आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे एच_टी_सी लिखा हुआ है।

और यहाँ पे आप देख सकते हो --

बुक रखी हुई है पेन वगैरा रखी हुई है।

हर तरह की चीज मिलती हैं ये यहां पे आप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

ये यहां पे बहोत सारी देख रहे है और यहां पे आप देख सकते है।